एक बुड्ढ़ा आदमी है और उसके पीछे भी एक लड़का खड़ा हुआ है और एक यह किसी चीज की दुकान है जोकि बहुत सी बड़ी है ऊपर भी है और साइड में --

औरबोहोत सारा खंडहर है पड़ा हुआ और नाली जैसी बनी है वो आदमी कुछ देख रहा है और --

लगता है किसी जिम में है और उसके पीछे बहोत सारा लाइट है और वो आदमी मुँह की तरफ से और हाथ में कुछ --

यहाँ पे कुछ बहोत से लोग हैं। मोटरसाइकिल भी टिकी हुई है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। उसके साथ में बगल में एक लगता है पेड़ है।